सामने में बहोत ज्यादा बस भी दिखाई दे रहे --

उन तीन आदमी ने रेड ऑरेंज और येलो कलर का कपड़ा पहना हुआ है।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

बगल में छोटा सा मून भी दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारा इलेक्ट्रिक वायर्स भी दिखाई दे रहा।

दीवार में ए_सी भी लगा हुआ है।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

पीछे में चमकता हुआ टाइल्स भी दिखाई दे रहा है।

हमको इस तस्वीर में एक रेस्टोरेंट का बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर में दो हरा रंग का चेयर दिखाई दे रहा है।

नीचे में एक कार्टून बॉक्स दिखाई दे रहा है।

कोने में एक पानी का बोतल भी दिखाई दे रहा है और दीवार में--

बिल्डिंग का अंदर में तीन आदमी भी दिखाई दे रहा है।

सामने वाला टेबल मे बहोत ज्यादा छोटा छोटा प्लेट और--

सामने में बहुत सारा टेबल्स और चेयर्स भी दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग का अंदर बहुत सारा लोग भी दिखाई दे रहा है।